कुछ किताबें भी शो हो रही हैं मुझे काउंटर भी शो हो रहा हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मुझे एक रोड शो हो रहा है मुझे इसके पास काफ़ी दुकानें शो हो रही है हरियाणा हैंडलूम के नाम से --

पहिए लगे हुए हैं भी रखा है जिसके ऊपर कट्टा लगा है और मुझे कुछ पक्षी भी नजर आ रहे हैं मुझे कुछ गीला भी नजर आ रहा है।

मुझे एक हेलमेट भी नजर आ रहा है मुझे जाने वाला यात्री भी नजर आ रहा है --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मुझे एक दुकान शो हो रही है जो कि तीज कलेक्शन के नाम से है जिसके--

मुझे एक कोड नज़र आ रहा है जो कैम्प लगा हुआ है मुझे सामने कुछ--

फर्श पर बैठे हुए हैं मुझे एक लकड़ी का--

जैसा कि मैं देख पाया हूं मुझे साइकिल दिखाई दे रही है जिसमें से एक साइकिल जिसमें --

येल्लो भी साइकल शो हो रहे हैं उसमे ब्लैक कलर का टायर --

इसके बगल से एक पानी का झरना भी दिखाई दे रहा है मुझे इसके बैकग्राउंड में काफी लाइट भी नजर आ रही है ।

मुझे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं नीचे एक टावर भी दिखाई दे रहा हैं।

काउन्टर है लकड़ी का जिसकी टेबल पे डेबिट कार्ड पड़े हुए हैं मुझे साइड मे एक पेटिस गरम करने वाला यंत्र दिखा ।

आ बिजली का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है मुझे दो पंखे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं ।

जिसमें एक बेड है जिसके ऊपर एक चद्दर बिछी हुई है तो उसके ऊपर दो तकिये भी हैं ।

मुझे कुछ कप भी दिखाई दे रहे हैं सकी मैं देख पा रहा हूँ मुझे एक ट्यूब लाइट भी शो --

मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि रेड कलर की है मुझे कुछ कारें भी दिखाई दे रही हैं जो कि रेड ग्रे --

जैसा की मैं देख पाया हूं मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखाई दे रही है इसमें रेड कलर की चेहरा मुझे कुछ ए_सी भी नज़र आ रहे है ।

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ मुझे पारम में एक बग़ीचा नजर आ रहा हैं।

इसमें काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं मुझे एक लेडिस नजर आ रही है जो--

उस पे कोई व्यक्ति नजर आ रहे हैं कुछ व्यक्ति फूल माला से इसको सजा रहे हैं मुझे बाइकें भी नजर आ रही है।

जैसे के में देख पा रहा हु मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है इस साइड पे बना हुआ है उस पर व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

मुझे आग बिझाने वाला यंत्र भी नज़र आ रहा है मुझे सामने की दीवार पर दो ऐ_सी नज़र आ रहे हैं।

चांसर आ रही है उसके सामने मुझे एक बड़ा शीशा नजर आ रहा है मुझे एक कीपिंग नजर आ रहा है ।

रेड कलर की है उस पर एक पेंटिंग भी लगी हुई है एक डी_जे बॉक्स भी लगा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे एक पेपर की शॉप नजर आ रही है जिसमें काफी --

बाइक नज़र आ रही है मुझे एक बेन भी नज़र आ रही है मुझे इसके ऊपर हरा त्रिपाल--

मुझे बिसलैरी और थम्ब्स अप की बो बोतल भी नज़र आ रही है मुझे कुछ टिसू पेपर विद ला--

जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जिस पर चिल्ड्रन बुक्स का बोर्ड लगा हुआ है।

इस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो पेटीएम के बोर्ड नजर आ रहे हैं मुझे एक फ्रिज नजर आ रहा है।

मुझे एक छतरी भी नजर आ रही है मुझे ला लाइट के खंबे भी दिखाई दे रहे हैं ।

इसमें काफी सारी नजर आ रही हैं इसमें हैं।